मनु का भी बनाया जाता है मनु का बोले तो जो सुखाया जाता --

और एक ही चीज मतलब एक ही जगह पे हर चीज मिल जाती है।

वहा पर बहुत सारे मजदूर वर्क कर रहे है और कोंकरिट बना कर सलाब पे धीरे धीरे डाल रहे है।

लेकिन यह दिखने में उतनी ही सुंदर दिखती है जितनी यह रहती है।